और यहां पर एक बिकाना चौपाटी नाम की भी दुकान दिखाई गई है।

एक लड़की को कपड़े पहना कर खड़ा किया हुआ है और यहां पे पीछे काउंटर भी लगा हुआ है।

यहां पे मुझे बहोत सारी मिठाई नजर आ रही है।

एक लाइट भी जलती हुई दिखाई दे रही है और यहां पे मुझे टेबल भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पे मुझे एक दुकान नज़र आ रही है और ये बैठने वाले चीज़ भी नज़र आ रही है।

एच_पी नाम लिखा नजर आ रहा है।

और एक पीनिया लड़की को साड़ी पहना रखी है और एक आदमी का आधा हाथ नजर आ रहा है और एक टेबल भी नजर आ रही है।

एक आदमी को साइड में खड़े होते हुए दिखाई दे रहा है और बहुत सारे पेड़ पौधे भी खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं।

ऐसा दृश्य कहीं देखने को नहीं मिलता है बहुत ही अच्छा वातावरण--

यहां पे एक मंदिर दिखाई दे रहा है और बहोत ही शानदार मंदिर दिखाई दे रहा है।

और यहां पे हरे भरे पेड़ भी है ऐसे पेड़ भी कहां मिलेंगे।

और कंबल भी दिखाई दे रही है और पैर पोछने--

और यहां पर नीचे जमीन में बहुत सारे कंकड़ पत्थर दिखाई दे रहे हैं और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे --